वो खींच रहा है फिर चारों तरफ बंधी है कार को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा --

यह एक ऑफिस है ऑफिस में --

लाइट्स लगी है बोहोत सारी रिक्शा जा रहे है कुछ गाड़ियां और हैं।

यहां पर घड़ी रखी है लाइट्स जल रही है।

वह एक खूबसूरत सा हॉल है लंबा सा है उसमें गुब्बारे लगे है झूमर लगी हैं लाइट्स लगी है।

इसमें बोहोत सारे पेड़ पौधे रखे हैं लगाने वाले हरे हरे घास है।

यह एक ऑफिस है ऑफिस पूरा खाली है उसमें कुर्सियां डली हैं टेबल रखी हैं।

बाहर कुछ पेड़ लगे है उम्म घास फूस लगा हुआ है।

और बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं।

और यहां से साउंड रखी है मशीने रखी है।